और छत्त भी छोटी खिड़की भी बाहर पेड़ दिखाई दे रहा है और अंदर कलरफ़ुल दीवाल दिखाई दे रही है। ]

मुझे यहाँ पर आदमी दिखाई दे रहे है एक पुलिसवाला है जोकि कुछ कर रहा है एक बिल्डिंग है जिसमे कांच लगा है उसमे आदमी भी खड़े हुआ है।